यहाँ सामने शीशे में एक व्यक्ति दिखाया गया है।

यहाँ लकड़ी की एक बड़ी डंडी रखी हुई दिखाई गयी हैं।

ये सामने ही बहुत सारी भीड़ लगी हुई हैं।

ज़मीन पर कहीं मिट्टी कहीं हल्की घास उगी हुई दिखाई दे रही हैं।